और स्कूल में एक पोस्टर साटा हुआ है और एक लाइट जल रहा है।

जिस पूल बहुत अच्छा रोड है। रोड पर एक आदमी खड़ा है।

जिसमे सौ का दाम लिखा हुआ है।